झूमर भी लगे हुए हैं छोटे छोटे लाइट्स भी लगा हुआ है।

एक रेस्टोरेंट है हॉल है जहां पर रंग बिरंगे पर्दे लगे हुए है।

और नीले कलर का बोर्ड भी टंगा है।

वाइट कलर की दीवाल दिख रही है और बड़ी सी खिड़की लगी हुई है।

ये फूलों से बहुत सुंदर डेकोरेट किया गया है।

कर रहे हैं एक लड़का लोहे का रॉड जैसा उठाया है।

बेंच भी रखा है ये नीले कलर का उस पर लैपटॉप रखा है टी_वी रखी है।

एक स्टेट बैंक ए_टी_एम दिख रहा है।

वहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं।

जहां पर बैलून से काफी सुंदर डेकोरेट किया गया है।

हमारे सामने एक बड़ा पंडाल लगा हुवा हैं।